मैदानों में कई सारे आदमी है होटल में भी काफी अच्छी सजावट की गयी है और बहुत सारे आदमी आये हुए है।

नदी में बहुत ही गहराई तक पानी है। इसमें मछली भी रहता --

छठी मइया की पूजा कर रहे है सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे --

वहाँ पर हमारे बिहार में बहुत ही धूम-धाम से मनाई जाती है।

बना रही है सभी एक राउंड बना के बैठे हुए हैं पैरों में शूज पहने हुए हैं स्कूल यूनिफार्म पहने हुए हैं।

ये स्कूल के बरंडा में रंगोली बना रही है।

ट्यूब बांध दिए गए हैं और इलाज कर रहे हैं | यह दो डॉक्टर हैं | दोनों डॉक्टर बकरी का इलाज कर रहे हैं।

बस में चढ़ती है | यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी रहती है | बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग --

स्कूल है | यह स्कूल में बहुत सारे लड़के एवं लड़कियाँ इस स्कूल में पढाई करने के लिए आते हैं ।-

ये स्कूल में बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर हैं बहुत ही अच्छी पढाई होती है।

ये एक मैदान है ये मैदान में बहोत सारे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए ह --

बहुत सारे लड़के लेडिस यहाँ --

जिन इसाई धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और चर्च में आ के प्रार्थना करते हैं।

इसमें तरह-तरह के रसगुल्ले सोनपापड़ी मिल रहे है यहाँ पे --